अ गेट लगाए जाते हैं। पानी पार करने के लिए गेट उठाए उठाने से पानी पार हो जाते हैं। यहाँ के पानी बहुत रफ़्तार होते हैं। ये सीमेंट से बनाए जाते हैं। गेट लोहे का बना हुआ रहता है। ये गेट का रंग नील कलर का है।

यहां पर सारे आदमी पड़ाके फोड़ रहे है यह फुलझरी है इसमें आग लगाने से यह फूल जैसे आग ऊपर से गिरते है और बगल में गाड़ियां नजर आ रहा है और सब कोई व्हाइट व्हाइट ड्रेस पहने हुए है यह रात का सीन है।

दुकान में बहुत सारे आदमी हैं और बाहर में दो बच्चे हैं और उ सामने कुर्सी और बाल्टी पानी का बड़ा डब्बा रखा हुआ है। साइकिल बाइक भी खड़े किये गए हैं सामने।

यह एक लड़का है जो पहाड़ के बीच में खड़े हैं। हम्म यह पहाड़ को पकड़ कर फोटो घीचाये हैं। ये लड़का ब्लैक कलर की जीन्स ब्लैक कलर के जूते और एक टी-शर्ट पहने हुए हैं।